और यह शाम का समय है और सूरज ढल रहा है और यहाँ का वातावरण भी बोहोत साफ है।

जिस पर बहुत ही भारी संख्या में पानी बह रहा है।

यह एक शहर का डाक घर है जिसे अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं।

और यहाँ पर रोजाना लोग आकर अपना पार्सल व खत दूसरे शहर में पहुँचाते हैं।

यह एक शहर का चर्च है जहां पर रोजाना लोग सुबह-शाम प्रार्थना करने के लिए आते होंगे |